ये एक बहोत बड़ी बिल्डिंग है।

यहां बहोत सारे बच्चे बैठे है।

और टिफन भी रखे हैं कुछ दीवार पे पेंटिंग उतरी है।

और इसके पीछे और भी बोहोत सारे लकड़ी के बॉक्स रखे हैं।

उस पे लिखा है पंजाब हेल्थ केयर सेंटर और यहां एक आदमी भी खड़ा है।

और एक छोटा सा पेड़ लगा है कुछ लाइट भी लगी है।

और यहां बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने लाल ड्रेस पहनी है।

ये एक बहुत बड़ा हॉल है।

और मेजों के ऊपर बहुत सारी सिलाई मशीन रखी है।

और शीशे की फिटिंग में कुछ सामान रखा है लाइट भी लगी है।

ये एक दुकान है जिसमें शीशे की फिटिंग बनी है।

इसमें कुछ फिटिंग बनी है।

इनमें कुछ पेंट के डब्बे रखे हैं।

ये एक बहोत बड़ा हॉल है जिसमें एक काउंटर बना है।

यह एक हॉस्पिटल है जिसके बाहर शीशे का गेट लगा है।

ये एक रास्ता है जिसपे लोहे का गेट लगा है।

और आसपास कुछ दुकान और मकान बने हैं।

यहां कुछ कार भी खड़ी है और हरे भरे पेड़ है।

और कुछ हरी भरी घास खड़ी है और कुछ पेड़ है।

काउंटर के ऊपर फाइल रखी है।